और बाइक का कलर रेड हैं एक बाइक का कलर ब्लैक हैं स्कूटी खड़ी हैं जिसमे दो मिरर लगे हुए हैं।

एक तीन मंजिल बिल्डिंग है जो की पीले कलर से पैंट हैं।

स्कूटी खड़ी हैं एक व्यक्ति बच्चे को लिए खड़ा हैं दो पेड़ लगे हैं लाइटिंग लगी हुई है।

यह एक मेन्स कपड़ो की शॉप हैं।

गमला रखे हुए है मेंन गेट के यहाँ--

लाइटिंग ल के लिए एक खम्बा लगा हुआ हैं तार खिचे हुए हैं बहुत सारे पेड़ हैं छोटे छोटे घास है सूखे पत्ते भी पड़े हुए हैं।